गाड़ी आके रूकती हे बस रुकी हुई हे दो ठो हे एक टेम्पू भी हे जिसमे सामान लोड किये हुआ हे ।

और यहाँ पे बहुत सारे पानी है और काफी ज्यादा गहराई भी है दिखने में पुल काफी लम्बा है।

और यहाँ पे जीन्स नया-नया फैशन का रखा हुआ है हर एक कलर का शर्ट है और हर एक कलर का सलवार शूट साड़ी भी उपलब्ध है जो दिखने मे काफी ज्यादा और अच्छा --

यह एक हाइवे रोड है जिसमें एक ओवरब्रिज बनाया हुआ है जिसमें हर व्यक्ति का आने-जाने के सुविधा के लिए किये हुए है।

बहुत पेड़ लगे हुए हैं जो हरा-भरा है अच्छा है और बिजली के लाइट की तार खींची हुई है घर के बाहर दो बाइक खड़े हैं और इस घर का कलर भी अच्छा है।